यह काफी बड़े होते है और खतरनाक भी होते हैं।

एक फुटबॉल का मैदान है और इसमें फुटबॉल खे खेला फुटबॉल का खेल हो रहा हैं।

और यह काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई रखी गयी है|